जम्मू कश्मीर का सीन है साथ में यहाँ बर्फ़बारी। अच्छा नज़ारा है यहाँ पर।

लोग यहाँ काफी आम लोग खाते हैं।